और यहाँ से येल्लो रंग का सजावट है जो बहुत अच्छी है। यहाँ पे बोहोत सारी कुर्सी है लगी हुई है और एक बहार ही खड़ा हुआ है।